धनिया की गड्डियां रखी हुई हैं और नींबू की पॉलिथीन रखी हुई है।

मकान के नीचे एक बहुत प्यारा अच्छा बड़ा सा ग्राउंड है और बाउंड्री भी है।

और जिसके बाजू में एक सैनिटाइजर बोतल भी रखे हुए हैं।

ये एक बड़ा सा ढाबा लग रहा है।--

और बाहर ही आप देख सकते हैं काफी सारे पेड़े लगे हुए हैं।

और आप देख सकते हैं एक जो पुराने जमाने में तोप चलती थी वो तोप भी रखी हुई है।

प्यारे प्यारे कलर है जिनके कुछ व्हाइट हैं।

ये काफी सुंदर दो मंजिल बिल्डिंग है।

इसमें बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है।

इसमें काफी सुंदर लाइट और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसके बाहर बहोत सारे बड़े बड़े--

आप देख सकते हैं एक बीच में ग्राउंड है जीसके आस पास छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

काफी सारी चेयर लगी हुई है टेबल लगी हुई है बीच में--

स्टेशन पर काफी सारे लोग कुछ खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए चेयर पे एक पेड़ लगा हुआ है।

यह आप देख सकते हैं छोटी सी दुकान लगा के रखे हैं।

और सामने आप देख सकते हैं सड़क पे एक स्कूल बस जा रही है।

और आप सामने देख सकते हैं बेड हुआ कबर्ड हुआ--

जिसके बोर्ड पर लिखा है श्री गुरु रामदास क्लिनी .